इसकी साईड में आप लोग देख सकते है हमे एक ब्राउन कलर की और ब्लू कलर की ढक्कन वाली बास्केट भी रखी हुई दिखाई दे रही है।

एक के ऊपर एक ऑर्गनाइझ तरीके से जमाया गया है जो की आप लोग देख सकते है ये एक टेबल पर रखे हुए है और यहा पीछे एक टैंक भी--

यहाँ पर आप लोग देख सकते है ये यहाँ पर रोड पर एक डेकोरेट हुई गाड़ी रखी खड़ी हुई है।